कोई बॉडी स्टीम है इसमें कम से कम लगभग दस पंद्रह आदमी है पीछे पहाड़ है।

यह एक मछली का दुकान है और यहां पे बहुत सारे मछली बेचा जाता है बेचा जा रहा है हमारे फिश सेंटर --

यह लगता है सरसों की खेती हो रही है।